और लाइटिंग भी बहुत सुंदर लगी हुई है इसमें लैंप लाइट लटकने वाली भी लगी हुई है और कुछ गमले भी लगे हुए हैं और घड़ी भी लगी हुई है।

चीजे रखी गयी है निचे भी रखे हुए है और बोहोत सारे लोग खरीदारी कर रहे है.

और यहाँ पे काफी सारी निचे मछलिया रखी हुयी है ।

और पीछे आप देख सकते है टेबल खुर्चिया भी लगी हुयी है।

और पेन भी टंगे हुए है और काउंटर पे आप देख सकते है काफी सारे --

और बहोत सारे बच्चे है जो की पोस्टर के पास गेट के पास खड़े हुए है।

और खिलोने टॉय में ये बंदूख रखी हुयी है।

ये आप देख सकते है ये काफी सुंदर बिल्डिंग बनी हुयी है.

और आगे एक अ गार्डन जैसा पार्क जैसा बना हुआ है।

ये काफी बड़ा एक गोडाउन बना हुआ है इसमें काफी सारी बोरिया रखी हुयी है.

आप देख सकते है ये काफी बड़ी शॉप है जिसमे--

र काफी सुंदर सुंदर व्हाईट वरमाला और गेंदा के फूल के भी बोहोत सारी फूल माला ही है।

डिज़ाइन वाली बाउंड्री बना के जिसमें काफी सूंदर पेड़-पौधे लगे हुए हैं और बड़े-बड़े नारियल के पेड़ भी लगे हुए हैं।

कुछ साउंड लगाए हुए है बिल्डिंग में औरकुर्सी और टेबल भी बड़ा हुआ--

और साईड में एक स्टूल भी रखा हुआ और आप देख सकते है ऊपर से बोहोत प्यारे गुलदस्ते लटकाये गौए है।

एक दोनों तरफ काफी सूंदर बिल्डिंग बनायीं गयी है और बीच बिच में डस्टबिन भी रखे हुए है.

भी कुछ है और ऊपर काफी बड़े बड़े बैनर लगे हुए है।

हम्म बिल्डिंग के बाहर काफी सारी गाड़िया खड़ी हुयी है.

और बहोत प्यारे तरीकेसे उसको डेकोरेट किया गया है।

अ साईड में एक बिल्डिंग है जिसके बाहार भी काफी सारे पेड़ पौदे भी लगाए गये है गमलोंमे।